और कुछ हरी भरी घास भी नजर आ रही है।

सिक्स फाइप बी_बी सेंवन थ्री नाइन थ्री और कार का रंग काला है।

और बीच में सैर करने के लिए जगह भी दे रखी है।

ये बहोत सारी लाइटों वाली लड़ियों से की गई है।

इस तस्वीर में आपको एक माउंटेन द माउंटेन डियर वैली नजर आ रहा होगा।

इस तस्वीर में आपको एक ऊंची सी इमारत--

और नर्सरी का अंदर का दृश्य हमें नजर नहीं आ रहा है नर्सरी के बाहर का बोर्ड का नजर हमें आ रहा है।

इस तस्वीर में आपको एक नेस्कैफे के कप में कॉफी नजर आ रही होगी।

और एक व्यक्ति ने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।

कुछ लोग वहां यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं।

हरे भरे पेड़ है। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है।

इस तस्वीर में आपको एक सरकारी स्कूल नजर आ रहा होगा।

जहां की पीछे की सजावट फूलों से की गई है।

दो व्यक्ति दुकान के अंदर है और दो व्यक्ति बाहर नजर आ रहे हैं।

हरियाली में खिले खिले पेड़ नजर आ रहे हैं यहां पर धूप भी है।

और एक कार नजर आ रही होगी।

इस तस्वीर में आपको डाक घर सेक्टर चालीस का --